फोर व्हीलर लगा हुआ देखने को मिल रहा है।

दीवाल का रंग हमें सफेद देखने को मिल रहा है।

बड़ा सा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है।

हमें इस मकान के अंदर----